यहां पर बहुत बड़ा दुकान है और इसमें बहुत सारे सामाने मिल रही है और एक आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है जोकि उसी की साइड में बहुत सामान भी पड़ी हुई है।

यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है जो की पेट्रोल पंप के पास एक आदमी खड़ा है और उसी के साइड में एक डॉग है जो कि डॉग बैठा हुआ है डॉग दिखने में बहुत अच्छी है और उसी के आगे में एक आदमी गुजर रहा है जो कि वो भी दिखने में बहुत ही हैंडसम है।

यहाँ पर समुन्द्र है और समुन्द्र में पानी भी है और आदमी भी जा रहा है जो कि यहाँ पे जो है बहुत-सारे पेड़-पौधे है।

और दोनो साइड जो है बहुत-बहुत बड़ा उम गाच्छ वृक्ष है जो कि दिखने में भयंकर-सा जगह है जो की पहाड़ के सा एरिया हैं और दिखने में बहुत अच्छा लग रहा हैं जहा पे झड़ी पति भी है |

जो की अंदर जाने में जाने मे अच्छा रहेगा और वहां अंदर में एक पिलर दिखाई दे रहा है घर का जो की--